सामने ग्राउंड दिख रहा है जिसमें पेंट किया हुआ है येलो कलर का और मेहरून कलर का दिवार दिख रही है पिंक कलर की गेट दिख रही है ब्लू कलर की --.

एक हॉल दिख रही है। हॉल पे मशीन रखी हुई है।

छत दिख रही है। छत पे बोहोत सारी पट्टियाँ रखी हुई दिख रही हैं। व्हाइट कलर का दिख रही है। बोहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

ब्लू कलर का गेट दिख रहा है। डस्टबिन रखी हुई दिख रही है। ब्लू क्लर का ग्रीन कलर का दीवार दिख रहा है। गेट दिख रहा है। एक पोस्टर टंगा हुआ दिख रहा है।

एसर दिख रहा दिख रहा है। ट्रैक्टर रही है ब्लू कलर की एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।